ये एक स्कूल है स्कूल बहुत बड़ा बना हुआ है स्कूल के बाहर बहोत बड़ा ग्राउंड है | लोहे के दरवाजे है जिसमें नुकीली नुकीली रॉड लगी हुई है।

यह एक टूर एंड ट्रेवल्स की दुकान है उसका नाम एस_के टूर एंड ट्रेवल्स है।